यह एक टंबल ड्राई की दुकान है।

और जिसमे फॉर एग्जाम्स लिखा है।

छोटी घांस है पास में एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है।